और हमारे सामने फोन की इस साइड दुकान भी है जो कि हमें दिख--

यह एक सैलून है यहां पर हर--

बाकी बहुत सारा समान है जो की पार्लर है।

यहां पर कई सारे गर्ल्स तैयार वगैरा होने का काम होता है।

यहां पर एक पर्सन है जो उनके दरवाजे के सामने से सेल्फी ले रहे हैं ये दरवाजे रेड और व्हाइट कलर का है।

सुंदर दिख रहा है सामने घड़ी भी है।

यहां पर जो है नदी दिख रही है बहोत दूर दूर--

पानी की बोटल भी है थनसब भी रखी हुई है।

उधर पहल शुरुआत से हम देखे तो दरवाजा जो है खुला हुआ है।

और कुछ सामान रखे हुए है जोकि भगवान के दिख रहे--

स्पा लिखा हुआ है उस पे बाकी वो सारी दुकानें अभी बंद है ये बाइक के पास में ला--

लाइटिंग लगी है कार जो है ब्लू कलर की है ब्लैक कलर --

यह तार भी पढ़ा हुआ है नीचे दरवाजे का जो कलर है।

यहां पर जो है कई सारे गमले रखे हुए हैं दो बड़े हैं।

पास में फिर छोटे रखे हुए हैं इधर की साइट अलग है।

इधर ग्रीन कलर की पत्तियाँ है जो की दिख रही है इसमें --

गाड़िया इसके सामने रखी हुई है आगे से रास्ता जाने का दिख रहा है ये जो बिल्डिंग जो है।

यहां पर पार्किंग हमें दिख रही है पार्किंग जैसा यहां पर ब्लैक कलर गाड़ी है जिस पे की--

सामने जो एक शॉप दिख रही है पास वाली भी खुली है ये भी खुली है उसके पास मे भी एक शॉप है।

रख रहे हैं आगे से उठाकर।

यहाँ पर हमें दुकाने दिख रही है दो तीन दुकाने जो की सारी बंद हैं।

जो सामने देख सकते हैं हम कई प्रकार की टाइल्स रखी हुई हैं उधर व्हाइट कलर की पास में कुछ पॉलिथीन भी पड़ी हुई है इधर अलग हैं ब्लैक कलर की।

अलग अलग हिस्सों में दिख रही है कोई चोखुट है किसी कोई लंबी है।

कुर्सी यहां पर रखी है एक भाई साहब दिख रहे और सामने--

चद्दर का रेड कलर में ये बना हुआ है ऊपर से--

यहां पर सामने देख सकते हैं हम काफी सारे फ्रूटस रखे हुए हैं जैसे केला--

और ग्रीन कलर पॉलिथीन में कुछ रखा गया है। चेयर के ऊपर--

फिर एक एक फूल भी यहां पर रखे हुए हैं एक टोकरी टाइप में--

ये हम देख सकते हैं पेट फूड स्टोर शॉप है।

ग्रीन कलर की रेड कलर की स्टील की--

और हमे नीचे लाइटर दिख रहा है कांच के ऊपर ही सारा सामान रखा हुआ है।

पास मे जो है बिल्डिंग दिख रही है स्कूल बस भी दिख रही है ये पार्किंग एरिया गार्डन दिख रहा है।

ये जो है सैलून दिख रहा है यहां पर तीन चार चेयरे लगी हुई है सामने कांच भी है।

उस साइड से कोई रास्ता आता हुआ दिख रहा है।